ब्लॉक इंटो की बजाय ब्लॉक से किए जा रहा है।

इसमें ग्लास कार्ड रखे हैं बैक कवर हैं।

एक अच्छी बात है कि ओपन जिम से भी जो लोग--

उम बेड पे व्हाइट शे शीट बिछी हुई है।

इस तस्वीर में कुछ मशीनरी है जो कि जिम जिम भी बोल सकते हैंजिम का एरिया है।

एक पौधा भी लगा है वहां पे--

ये तस्वीर जो है ये किसी सैलून की है।

सराएं एक भवन की है जहां पे ये डोरमैट्री लग रही है मेरे को।

ये पिक्चर जो है ये गेंदा मॉल शॉप की है जो की --